की हुई है और बहोत सारे लोग खाने के लिए टेबल पे बैठे हैं और कुछ रिसेप्शन पे भी नजर आ रहे है।

कुछ तारें जैसी दिखाई दे रही हैं और मशीनें जैसी दिखाई पड़ रही हैं जिसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड लिखे हैं मिशन ओलंपिक्स ।

ये कोई कांच की बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसमें बहोत सारी कारे --

चूड़ियां पड़ी हुई है बिंदिया पर्स भी नजर आ रहे हैं और सूटों पे लगाने वाली लेसेस भी नजर आ रही है।

आसपास कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

व्हाइट कलर की इमारत नजर आ रही हैं जो पैलेस टाइप कुछ नजर--

और टैंट भी लगा हुआ हैं।

जो गुलाबी और पीले रंग का है यहां पे कोई फंक्शन लगता है नजर आता है।

उसपे होटल का नाम बड़ा अच्छा लाइटिंग से लिखा हुवा है।

पीले रंग की लाइटिंग जग रही है आसपास कोई इंसान नजर--

जिसके पास एक कैंपेन लगी हुई है।

और एक बड़ा सा बॉक्स नीले रंग का है जैसे मशीन हो।

सामने एक रस्ता है जहां पे एक आदमी खड़ा है।

जिसमें हर प्रकार का सामान रखा हुआ है।

सामने एक आदमी नजर आ रहा है।

राजा महाराजाओं का राजस्थान का कोई पुराना किला है।

जिसमें दो खिड़की नजर आ रही है।

जहां एक गाड़ी खड़ी हुई है।